यह एक सड़क है इस सड़क पर दो भैंस चलती हुई नजर आ रही है।

यह एक दुकान है इस दुकान के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

यह एक चित्र है। इस चित्र में एक लकड़ी का काउंटर रखा हुआ है।

यह एक रूम है। इस रूम के अंदर एक एल_सी_डी लगी हुई है।

और एक पेड़ भी खड़ा हुआ है और एक खंभा भी दिख रहा है।

यह एक बैंक्वेट हॉल है इस बैंक्वेट हॉल के अंदर एक मैट बिछी हुई है।

और इसके अंदर एक बोट भी रखी हुई है जिसके ऊपर कुछ आदमी बैठे हैं।

और इसके अंदर एक कैमरा भी लगा हुआ है।

और उनके ऊपर कुछ एल_इ_डी भी टंग रही है।

और दीवार पर एक तिरंगा बना हुआ है और पीले कलर का पेंट भी हुआ है।

और पर नीले कलर का पेंट हुआ है।

और इसके अंदर कुछ लाइटे भी लगी हुई है।

और इसके अंदर कुछ सामान भी रखा हुआ है और दीवार पर एक बैनर भी लगा हुआ है।

इस डी_जे पर कुछ लाइटा भी लगी हुई हैं।

और एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर खड़ा हुआ है।

और बहुत सच्चे अच्छे पेड़ भी खड़े हुए हैं।